साथ हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे सामने कई सा घर बने दिखाई दे रहा जो व्हाइट कलर सामने जो--

दिन का समय दिखाई दे रहा है कई सारे हरे भरे पौधे--

प्लस कार्यक्रम का नाम दिखाई दे जजेस बैठे हुए दिखाई दे रहे जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने एक इंसान मोबाइल में--

कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई दे कांच का गेट लगाए गए है सामने से दुकान खुली दिखाई--

लगी हुई दिखा के दे रहे सामने सब बादल वादल बने हुए दिखाई दे रहे--

की टोल टैक्स पेट्रोल पंप में खड़े दिखाई दे रहे--

लगेज दिखाई दे रहे हैं ऊपर फोटो आजू बाजू के घर--

भूरे कलर की ताल चालस लगाई गई है सामने कई सारी चीजें रखी दिखाई दे रही है सामने की ओर --

मुझे इस फोटो के सामने कोई घर बनता को दिखाई दे रहा है। आजू बाजू हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए--

इधर में तो काम करते हुए दिखाई देते हैं हम उसे ड्रम पर--

दीवाल मे बैठ कर फोटो कहीं ये रात का समय दिखाइ दे रहा आजू बाजू किधर--

म्यूजिक एक दुकान खुली दिखाई दे रही सा--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे है।

कुंडा टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा आजु-बाजु पहाड़-आहाड़ बनाए गए दिन का समय दिखाई देता पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा आजू-बाजू --

चट्टान ओट्टान बनाई दिखाई दे रहा है--

रखे हुए दिखाई दे रहे जो प्लास्टिक टाइप के बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

पानी व पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है आजू बाजू--

एक एक फूल उलो की दुकान उकान खुली हुई दिखाई दे फूल माला--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे इंसान हूं बैठे हुए दिखाई दे रहे कई सारे पूरा किया वो दिखाई दे रहे कई सारे बी--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे पर्दे वर्दे लगे दिखाई दे रहे हैं सामने की ओ--

बिछाई गई सामने की ओर।